यहां पर बहुत सारे लड़कियां लड़के हैं।

और यहां बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक गेट भी लगा हुआ है।

और यहां पर चेयर भी रखी है जो रेड कलर की है।

यह एक बहुत ही बड़ा घर है जो वाइट कलर का है।

घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ भी है।

यह एक बहुत ही बड़ा महल है।

और यहां पर बहोत से पेड़ पौधे हैं और यहां पर दो कार खड़ी है जो ब्लैक और व्हाइट हैं।

और यहाँ पर ग्रीन भी लगी है।

यह एक शॉप है इस शॉप में बहुत से बैटरे रखे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा मंदिर है इस मंदिर के बाहर बहुत से व्यक्ति और महिला खड़ी हुई है।

और एक बहोत बड़ी मूर्ति भी है जिसके आस पास में फूल लगे हुए हैं।

और यहां पर बहोत सी बहोत प्रकार की तस्वीरे भी लगी हुई है।

नीले पिंक कलर के कई प्रकार की आ रही है बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर ग्रीना भी लगी हुई है।

यहां पर चेयर और टेबल भी है और एक लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सी लाइट और पंखे लगे हुए है।

और यहां पर कैलेंडर भी है और शीशे भी लगे हुए हैं।

और यहां पर परचून का सामान भी रखा हुआ है।

यह एक स्कूल है इस स्कूल में बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं इनके हाथ में प्रैक्टिकल है।

और उसके बाहर एक बहुत ही सुंदर सुंदर जीने लगे हुए हैं।

और उसके पास में एक कार भी खड़ी हुई है।

यह एक पहाड़ है। इस पहाड़ पर बोहोत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बोर्ड जो बहुत बड़े दिखाई दे रहा है उसे पर एक कार्टून भी हुआ है।

होम डिलीवरी वाला नंबर भी दिये हुए है और नूडल --

यह एक स्कूल है इस स्कूल के बाहर पेड़ भी हैं।

इस पर वे खिड़की भी लगी हुई है जो नीले कलर की है।

गेट लगा है जो लोहे का है और उसके पास में गमले रखें हुए हैं।

और यहां पर ग्रीन भी लगी हुई है और व्हाइट कलर का कलर भी हुआ है और पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और यहां पर बहुत सी मशीनें रखी हुई है सामान है जो ब्लैक कलर का हैं।

और यहां पर बहुत सी बाइके भी खड़ी हुई हैं और बहोत सी दुकानें भी है।

यहां पर एक बहुत बड़ा टेबल है उस पर यह रखे हुए हैं।